यह तस्वीर एक पहाड़ की है पहाड़ के पास एक पोल है जिससे तार पास हो रहा है।

उसने काले रंग की शर्ट और नीले रंग की जींस पहनी हुई है।

बोर्ड पर हामिदगंज डाल्टनगंज लिखा हुआ है।

बगल में दो आदमी काम कर रहे हैं यहां पर दो तीन काली कुर्सियां हैं।

बोर्ड के बगल में दो पेड़ हैं गेट के पास एक रूम बना हुआ है।

यह तस्वीर एक क्लास रूम की है।

आगे की तरफ बहोत सारे स्टूडेंट्स हैं बाएं और दाएं तरफ खिड़कियां भी हैं।

यहां पर बहुत सारे लाइटें और झालर भी लगे हुईं हैं।

यह तस्वीर एक शोरूम की है जिसका नाम टाटा मोटर्स है।

यह एक फ्लावर शॉप है पीछे का दीवार नीले रंग का है।

सामने चार गाड़ियां है जिसमें से दो स्कूटर और दो बाइक है।

तस्वीर में पूजा हो रहा है यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करने आए हुए हैं।

सामने एक स्कूटर और दो बाइकें खड़ी हैं।

ती है जो नीले रंग की चेयर पर बैठा हुआ है और वह शेविंग करवाने आया है।

यह तस्वीर एक यूनिवर्सिटी की है इसके ऊपर यूनिवर्सिटी डिपार्मेंट ऑफ पॉलीटिकल साइंस लिखा हुआ है।

तस्वीर में ऊपर दो पंखे भी हैं और दो लाइटें भी जल रहीं हैं यहां पर वेट लिफ्टिंग मशीन भी है।

ढाबल के बगल में एक मेडिकल स्टोर है। इसका पूरा नाम सुमित मेडिकल स्टोर है मेडिकल स्टोर में एक आदमी भी है।

कम्युनिटी सेंटर के पीछे एक मंदिर है। कम्युनिटी सेंटर पीछे दो लोग भी हैं।

यह तस्वीर एक बंगले की है बंगले का रंग सफेद है।

स्टोर में एक सीढ़ी भी है सीढ़ी का रंग काला है सीढ़ी के बगल में बहुत सारी ब्रेड के पैकेट रखी हुई हैं।

पीछे में बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं। यहाँ पर एक पानी का टंकी भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं।